लिबरे ऑफिस draw में flowcharts glue points और beizer curves पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में आप beizer curves और flowcharts बनाना सीखेंगे
आप यह भी सीखेंगे कि connectors और glue points प्रयोग करके flowcharts को कैसे जोड़ते हैं
यहाँ हम ubuntu लिनक्स version 1004 और लिबरे ऑफिस suite version 334 प्रयोग कर रहे हैं
अब bezier curves के बारे में सीखते हैं
bezier curves मुख्यतः curves को smoother बनाने के लिए computer graphics में प्रयोग होते हैं
आप इन curves को curves के आकार और आकृतियों के साथ परिक्षण करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं
सारे curves का शुरूआती और अंतिम point होता है
curve पर points nodes की तरह सम्बंधित होते हैं
अब अपनी routemap file पर जाते हैं
अब home से commercial complex पर जाते हैं
ऐसा करने के लिए हमें parking lot से दायीं तरफ जाना है
याद रखें पिछली बार हमने drawing का समूह बनाया था अतः अब इसका समूह हटाते हैं
अब drawing toolbar से curve पर click करें और curve चुनें
draw पेज पर रास्ते के शुरूआती point पर click करेंयह home है
mouse के बाएं button को दबाएं और इसे play ground तक खींचें
आप एक सीधी line देखेंगे
mouse button को छोड़ें
अब pointer को commercial complex तक लाएं
line curve लेगी जैसेजैसे mouse moves moves
अंतिम point पर doubleclick करें जो कि commercial complex है
हमने एक curve बना लिया है
ध्यान दें कि curve का परिवर्तन smooth है
अब हम edit points toolbar प्रयोग करके इस curve पर points को edit करते हैं
curve पर click करें
edit points toolbar को सक्षम करने के लिए curve पर rightclick करें और edit points चुनें
जब curve की समाप्तिpoints पर नीले boxes दिखते हैं तो हम curve edit कर सकते हैं
curve के शुरूआती point पर click करें
आप control point के साथ dotted line देख सकते हैं
अब आप ज़रुरत के अनुसार curve को बढ़ाने या घटाने के लिए dotted line को खींच सकते हैं
एक बार बदलाव करने के बाद draw पेज पर कहीं भी doubleclick करें
एक curve को smoother बनाने के लिए आप edit points toolbar प्रयोग करके curve पर points को प्रविष्ट move और मिटा सकते हैं
यहाँ आपके लिए एक छोटा सा नियत कार्य है
edit points टूलबार प्रयोग करके bezier curve बनाएं और सारे विकल्पों के साथ कार्य करें
अब flowcharts बनाना सीखते हैं
add routemap file पर 2 नए पेज जोड़ते हैं
draw flowcharts के लिए drawing toolbar में अलग विकल्प देता है
यह flowchart spoken tutorial प्रक्रिया में सारे चरण दिखाता है
अब इस flowchart को दिखाते हैं
drawing toolbar से flowcharts पर click करें
छोटे काले त्रिभुज पर click करें और flowchart: process चुनें
cursor को draw पेज पर रखें mouse का बाँया button पकड़ें और इसे नीचे खींचें
आपने एक process box बना लिया है
process box पूरी प्रक्रिया में एक step या एक event दिखाता है
हम flowchart objects में भी text प्रविष्ट कर सकते हैं
process box पर doubleclick करें और इसके अंदर text create the tutorial outline to chunk content into 10minute scripts type करें
flowcharts के लिए formatting विकल्प अन्य objects की तरह ही समान है
अब process box के अंदर text अलाइन करते हैं
अब text चुनते हैं
context menu देखने के लिए rightclick करें और text पर click करें
text dialog box दिखता है
text dialog box में resize shape to fit text width box पर टिक करें ok पर click करें
आप देखेंगे कि text को fit करने के लिए process box ने अपना आकार बदल दिया है
अब एकसाथ ctrl + z कीज़ दबाकर इस क्रिया को अनडू करते हैं
दोबारा text चुनते हैं
main menu पर जाएँ और format चुनें और text पर click करें
text dialog box खुलता है
अब word wrap text in shape विकल्प जाँचते हैं
process box की आकृति में fit होने के लिए text अपने आप समायोजित हो गया है
उसी तरह से पहले वाले के नीचे एक process box बनाएं
इसके अंदर text create scripts प्रविष्ट करें
अब एक decision box बनाएं और इसके अंदर text review okay प्रविष्ट करें
decision box एक निर्णय दिखाता है जो किया जाना है
यह हमें निर्णय के आधार पर अगली प्रक्रिया के लिए निर्देशित करता है
अब decision box के नीचे एक अन्य process box बनाते हैं
अब इसके अंदर text record video प्रविष्ट करते हैं
आगे यहाँ हमें text review okay के साथ एक अन्य decision box की ज़रुरत है
अब वो decision box जो हमने पहले बनाया copy करें और यहाँ रखें
अतः decision box चुनें और एकसाथ ctrl + c कीज़ दबाएं
अब एकसाथ ctrl + v कीज़ दबाएं
अब इस box को पिछले process box के नीचे लाएं
अब इसके अंदर text review okay प्रविष्ट करें
अंततः अब flowchartconnector बनाएं और उसमें a type करें
flowchartconnector flowchart के दो भागों को जोड़ता है
अब मानिये कि flowchart का पहला भाग एक पेज पर है
और दूसरा भाग दूसरे पेज पर है
हम पहले पेज पर flowchart के अंत में एक flowchartconnector बनाते हैं
फिर हम वही connector दूसरे पेज की शुरुआत में बनाते हैं
objects को जोड़ने से पहले हम draw में connector lines और glue points के बारे में सीखते हैं
connectors lines या arrows होते हैं जिसके छोर object से जुड़े हुए या बँधे हुए होते हैं
glue points जैसा कि name दर्शाता है वो points होते हैं जो connectors को objects से जोड़ते हैं
सारे objects glue points रखते हैं
ये अदृश्य होते हैं
ये तब दृश्यमान होते हैं जब drawing toolbar से connector चयनित होता है या जब एक mouse pointer object के ऊपर moved होता है
glue points handles के समान नहीं होते हैं
हम object को resize करने के लिए handles प्रयोग करते हैं
glue points connector को object से जोड़ने में प्रयोग होते हैं
अब connectors प्रयोग करके flowchart में objects को जोड़ते हैं
drawing toolbar पर जाएँ और connector चुनें
भिन्न तरह के connectors को देखने के लिए छोटे काले त्रिभुज पर click करें
अब straight connector ends with arrow विकल्प चुनते हैं
जब आप connector चुनते हैं तो आप draw पेज में सारे objects पर cross marks देखेंगे
ये glue points हैं
अब पहले process box के glue point से अगले process box के glue point तक एक line बनाते हैं
हम connectors प्रयोग करके सारे flowchart objects को ऊपरसेनीचे की तरफ जोड़ेंगे
आप देखेंगे कि आप जहाँ भी cursor रखते हैं प्रत्येक line स्वतः ही नज़दीकी glue point पर जुड़ जाती है
अब process और decision boxes को जोड़ते हैं
drawing toolbar से connector ends with arrow विकल्प चुनें
अब process box से decision box को जोड़ते हैं
उसी प्रकार अब decision box को अगले process box से जोड़ते हैं
आप connector पर text भी जोड़ सकते हैं
decision box से process box वाले connector पर अब no type करते हैं
connector चुनने के लिए इस पर doubleclick करें
सिरे के control points सक्रिय हो जाते हैं
और text cursor दिखता है
अब text no type करते हैं
अब अन्य connector के लिए यह एक बार और करते हैं
हमने एक सरल flowchart बनाया है
अब ctrl + s कीज़ दबाकर अपना flowchart सेव करते हैं
आप lines और arrows प्रयोग करके भी objects को जोड़ सकते हैं
लेकिन उस स्थिति में आपको objects का समूह बनाना चाहिए
यह इसलिए है क्योंकि arrows objects से जुड़े नहीं रह सकते
connectors lines और arrows से कैसे भिन्न होते हैं
connectors lines या arrows होते हैं
जिसके सिरे ऑब्जेक्ट के glue points से
स्वतः ही जुड़े होते हैं
दूसरी तरफ lines और arrows अपने आप नहीं जुड़ते हैं
इस tutorial को रोकें और यह नियत कार्य करें
spoken tutorial फ्लो चार्ट का दूसरा भाग बनाएं
processes boxes को रंग करें
अक्षर a के साथ connector बनाएं
यह इस flowchart में पहला object होना चाहिए
यह इस प्रकार दिखना चाहिए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
इस tutorial में आपने निम्न के बारे में सीखा: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
spoken tutorial project team
spoken tutorials का उपयोग करके करशालाएं चलाती है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
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
* आय आय टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ